इस फोटो ने मुझे हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे औरत और आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे आदमी औरत बच्चे दिखाइए दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक पुराना किला दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे खदान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे किराने का सामान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे डेंटिस्ट की मशीने दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे रोड दिखाइए दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी सीमेंट की बोरिया दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे अलमारी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे पुल दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।